चेयर्स दिख रही हैं काउंटर दिख रहा है और यहां पे--

यह एक शॉप दिख रही है।

पैकेट्स भी दिख रहे हैं जो--

प्लेट में बहुत सारे प्रांठीया दिख रही हैं प्रांठीया गेहूं के आटे की बनी हैं।

और भी बहुत सारा सामान दिख रहा है।

और स्विच बोर्ड भी दिख रहा है एक जग दिख रहा है कप भी दिख रहे--

और यहां पे बहोत सारे लोहे के तूकड़े दिखाई दे रहें हैं जो अलग अलग परकार के हैं।